और रस्सी है यहां पर पत्थर है।

यहां पर दो खिड़की है यहां पर एक घड़ी है एक फैन है यहां पर एक अलमारी है।

ये दो आदमी खड़े हुए है दो आदमी बैठे हुए है ये काम करने को लेको जा रहे हैं।

यहां पर एक सफेद कलर की स्कूटी है।

यहां पर बहुत सारे मच्छी के दुकाना है।

यहां पर एक पुराना घर है।

यहां पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

बहुत सारा ऊपर से पानी गिर रहा है।

यहां पर एक बाइक ठहरी हुई है यहां पर बहुत सारे राशन के थैले रखे हुए हैं।